हेयर आयल और यहाँ अमला ब्राह्मणी सिकाई --

अपने धर्म के कारण वो शूली पर चढ़ गए थे और उन्होंने अपने आप को कभी --

दूसरी तरफ को रपटते है रपट कर भया जमीन पर आते है और फिर से चढ़ते है और फिर से रपटते है इहै प्रक्रिया अब है।

अंथी पूर्वक किया जाता है जिसमे सेवम लोहा और कोन्किरीट का --